यहां पर काफी सारे खाने का समान है यहां पर काफी सारी दुकानें लगी हुई है।

यह एक स्कूल का फंक्शन चल रहा है।

यहां पर इलेक्ट्रॉनिक के सामान मिलते है यह बोड नीला कलर का है और यहां पर--

यहां पे एक सामने ब्लैक कलर का दरवाजा है जिसके ऊपर--

यहाँ पर एक पंडित जी दिया जला रहें हैं।

एक हमारे देश का नक्शा बना हुआ है।

और कुर्सी लगी हुई है यह कुर्सी ऑरेंज ग्रीन की है सा--

यह तस्वीर में काफी सारी तस्वीरें बनी हुई हैं।

उसके पास में कुछ और ही ब्लैक और वाइट कलर की तस्वीर बनी हुई है।

यह दुकान स्कीन और वाइट कलर की और ब्लैक की है।